पूजा कर रहे हैं प्लेट है कटोरिया हैं लाइट है।

और बराबर में कुछ हैं और बाइक्स हैं स्कूटर है।